एक रोड दिख रही हैं रोड मे एक लेडिजआते हुए दिख रही है एंड बगल मे कंट्रक्सन जैसा घर दिख रहा हैं एक कार दिख रही है एक टू व्हीलर दिख रही है।

साइकिल सीख रही है एंड पास में एक मैदान है जिसमें काफी घास-फूस दिख रही हैं आस-पास का बाउन्ड्री फॉल दिख रहा है आसमान दिख रहा है एंड पेड़-पौधे भी --

टू व्हीलर्स एंड फर्श दिख रहा है बगल में टाइल्स की एक दुकान दिख रही है पेड़ दिख रहे हैं पीछे का आसमान दिख रहा है एंड गेट पीले कलर से कलर किया गया है।

एक बड़ा सा पेड़ है एण्ड पीछे बहुत आसमान खुला हुआ दिख रहा है एण्ड पावर लाइन की केबल्स जाती हुई दिख रहीं हैं सप्लाई की केबल्स जाती हुई दिख --

एक बड़ा सा कुछ मंदिर टाइप का दिख रहा है जिसमें सीढ़ियाॅं हैं ऊपर जाने के लिए बगल में लोहे की रेलिंग्स हैं एण्ड ठीक बगल में बड़ा सा गेट बना है।

एक गाड़ी है की पीछे कुछ समान रखा है एल.इ.डी. लाइट्स रखी हुई है।

सामने एक बुक स्टोर दिख रहा है जिसमें काफी सारी किताबें दिख रही हैं जो कि एक टेबल के ऊपर रखी हुई हैं।

एण्ड काफी सारे लोग सामने दिख रहे हैं फ़ोटो में और सामने ऑटो है कुछ लोग स आते-जाते दिख रहे हैं। सामने दुकान्स हैं।

यहाँ पे काफी सारे लॉक्स है जो कि कुछ पूजा करते दिख रहे है।

एक बड़ा सा हाथी दिख रहा है जो कि पानी में है एण्ड उसके दांतों में कुछ कैप्स पहनाई गई हैं उसमें चंदन लगाया गया है उसको नहला रहे हैं।

कैमरे के सामने कैंची दिख रही है शीशा दिख रहा है।

एण्ड सर दिख रहा है उसका सामने ग्रॉसरी की समानें दिख रही हैं कुछ --

आस-पास बॉउन्ड्री हॉल है एण्ड वहाँ पे काफी सारे लोग हैं।

काफी सारे गुब्बारे दिख रहे है झंडे दिख रहे है एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जिसकी पत्तियां हरी-भरी दिख रही है एंड लोग खड़े है चने बेचने वाले दिख रहे है हरी मेट दिख रही है।

उम्म ये मंदिर मंदिर में काफी सारे लोग दिख रहे हैं जोकि भगवान की पूजा करते हुए दिख रहे हैं।